इधर फायर ब्रिगेड्स भी लगे हैं इधर कचरे का डब्बा है एक एक कार भी दिखाई दे रही है एक लोग बैठे हुए भी हैं।

लड़कियां कुछ लड़के ऊपर दीवार में पंखा लगा हुआ है।

यहां पर एक शीशे का बिल्डिंग टाइप का ऊपर जिम दिखाई दे रहा है पर्दा लगा हुआ उसमें कुछ जिम के--

सामान दिख रहा है नीचे कुछ और डिपार्टमेंटल स्टोर दिख रहा है प्लाजा बगल में ईंटे का घर बन रहा है।

अ-अटैची रखे हुए हैं एक हरे रंग का एक नीले रंग का एक लाल रंग का एक व्यक्ति खड़े होकर बीच में बातें भी कर रहे हैं।

यहां पर एक व्यक्ति है पेड़ में कुछ कर रहे हैं सब हरे रंग के डब्बे लिए उसमें कुछ है और वो बैगनी रंग का शर्ट पहने हुए हैं।

कुछ छोटे-छोटे शो वाले पौधे भी दिख रहे हैं सामने मकान दिख रहा है दो-तीन मंजिला--

पोस्टर लगी हुई है और कुछ व्यक्ति रोड पे खड़े हैं।

बीच बीच में मेज लगे मेज पर टिश्यू पेपर रखे हुए हैं।

बाहर कुछ लोग बैठे हैं खड़े हैं गुरुद्वारा है यह--

पीछे पीले रंग का और बैगनी रंग का दीवाल है सामने दीवाल में कुछ लगा है ट्यूब लाइट्स भी जल रहे हैं पानी का बोतल नीचे रखा हुआ है।

यहां कुछ गुब्बारे लगे हुए हैं कमरे जैसा है कुछ गुब्बारे हैं लाल सफेद नीले और--

सामने कुछ ए_सी जैसे भी दिखाई दे रहा है बाहर रखा हुआ कुछ गुबारे जमीन पर पड़े हुए हैं मेज पर बहुत सारे सामान है गेट दिख रहे हैं।

यहां पर कोई स्टैंड जैसे रखा हुआ है और जमीन पर कुछ--

और एक सामने दीवार में कुछ किताबें दिखाई दे रही है शीशे के अंदर पे।

पीछे मैट रखा है दरवाजा दिख रहा है सफेद रंग का एक साइड में शीशा भी दिख रहा है।

और कुछ लैंप की तरह चल रहा है और बीच में पतले से रोड है ऊपर--

यहां पर कुछ तोता दिखाई दे रहे हैं कुछ हरा तोता कुछ सफेद तोता कुछ--

यहां पर यह पार्क है पार्क पीछे एक बड़ा सा मकान है बहुत सफेद और लाल रंग का दिख रहा है पेड़ है कु--

अब इसमें कुछ बना हुआ है लाल रंग का काले छाजा छाया हुआ काले रंग का उसमें पिलर है कु--

यहां पर एक टोटो खड़ा है और एक टेंपो खड़ा है पीछे--

तंबू तंबू के नीचे नीले और सफेद उसके पीछे नारंगी और सफेद तंबू गड़े हुए हैं कुछ लोग खड़े हैं किनारे--

लाल और सफेद कलर के कपड़े गिरे हुए अ ढके हुए हैं मेरे उसी से पीछे तस्वीर भी लगा हुआ है।

डिज़ाइन वाले दीवार हैं कुछ पीले दीवार हैं इधर कांच का बना हुआ है बड़ा सा उसमें कुछ दिख रहा है रखा हुआ एक पानी का कंटेनर लगा हुआ है।